और एक काउंटर बना हुआ है काउंटर की ई अ ऊ अ काउंटर पर रखकर ड्रिंक करने के लिए कुछ चेयर्स रखी हैं इन चेयर्स पे बैठकर लोग कंफरटेबली --

खरीदने वाले कुछ लोग भी खड़े हैं जो कुछ बुक्स खरीद रहे हैं।

गमले बने हुए हैं। एक साइड राइट साइड पर काउंटर बना हुआ है।

यहां पर एक तसोइ टाइप सा कुछ नजर आ रहा है।

गांव के बुजुर्ग लोग आते हैं यहां पे सब इकठ्ठे होके अपना दुख सुख बांटते हैं।

यहां पर हमें एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जो कि अभय राम एंड संस के नाम से है।

सामने दिख रहे हमारे को फोटो में जो डोर दरवाजे खिड़कियां--

यहां स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे री है इसमें बरामदा बना हुआ है बरामदे के अंदर बहुत सारे कमरे दिखाई देरें हैं।

एक फायर ब्रिगेड का भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ नजर आ रहा है।

ये जो शॉप है एक कोलकाता की शॉप है नाम तो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा।

जिसमे बहोत सारे छोटे बड़े हर तरह के गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं।